ये छ ये छवि ऑटो केयर का है। यहाँ पे ऑटो रिक्शा गाड़ी बस फोर व्हीलर आदि जाते हैं। धुलाई होता हैं इसकी मरमत होती हैं। साफ सफाई होती हैं जिसमे लोग सफ़र करते हैं।

ये लोग अक्सर आते हैं अपनी गाड़ी की धुलाई कर --

इस के सामने बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे अनेक मरीजो का ईलाज किया जाता है।

यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नही होती हैं। टिकेट लेकर ही सफ़र करना हैं।

ख्जानती के पास ये स्थित है। यहाँ पे क्रिस्टियन लोग जाते हैं चर्च में और इशु के सामने अपनी मन्नते मांगते हैं और वहाँ उनके सामने मोमबती जलाते हैं। यह हर एरिया में हर शहर में एक चर्च का निर्माण किया करवाया गया हैं।